यहाँ पर बहोत सारे घर दिख रहे हैं।

नदी के ऊपर एक बंदा बोट से बोटिंग कर रहा है।

ब्रिज के नीचे एक नदी बह रही है।

यहां मुझे एक नाला दिखाई दे रहा है।

एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

यह गार्डन है। गार्डन में बैठने के लिए बहुत सारे चेयर्स भी रखे हुए हैं।

बाहर एक बल्ब भी जल रही है।

इस होटल को श्री आलो लीबांग ने किया था।

यहां मुझे दो घर दिख रहे हैं जिनकी छत टीन की है।

बोहत बड़ा घर भी दिख रहा है।

ये एक रेलवे स्टेशन है।

ये एक आई_सी_एफ कोच है।

जो फोटो खींच रहा है शायद फोन निकल के।

यहां एक सोफा रखा हुआ है।

जिम में काफी सारे इक्विपमेंटस रखे हुए हैं।

रस्ते के लेफ्ट साइड में एक खुला मैदान भी दिख रहा है।

यहां मुझे एक सीढ़ी दिख रही है।

दुकान में लाइट दिख रही है सफेद रंग की।